यहाँ पर हमें हर वो चीजे मिल जाती है छोटी-बड़ी जो हमें रोज जिंदगी में जरूरत पड़ती हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं की सामान को बहुत बूरे तरीके से रखा गया हैं।

डिवाइस रखा गया है और यह एक छोटा सा क्लीनिक है । लेकिन इसमें बहुत सारे डिवाइस है जो कि हमारे इलाज के लिए बहुत जरूरी है । यहाँ पर आधुनिक डिवाइस रखे गए --